यहाँ पर पानी देखा जा सकता है जिसको तय तालाब है अगल-बगल बहुत सारे यहाँ पे उचे उचे कुछ पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे है जिसके उपर बहुत सारी घासे लगी हुई है।

अगल-बगल मे बहुत सारे पेड़ लगाए गये है नीचे कुछ कारे खडी हुई है सामने बड़ी-बड़ी कुछ जालिया लगाई गयी है ऊपर काला आकाश देखा जा सकता है।

यहाँ पर एक ओपीन ग्राउंड देखा जा सकता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है ज्यादा तर बच्चों ने लाल रंग के ड्रेसेस पहन रखी है।

अगल बगल मे बहुत सारे पेड़ वगैरा दिखाई दे रहे है और नीला आकाश है इस सफेद कलर के मकान मे रेड कलर की पट्टी भी लगाई गई है।

यहा पर एक छोटासा मखान दिखाई दे रहा है और अंदर जाने के लिए एक कुछ सीडिया वैगेरा बनाई गयी है नीचे एक पक्की सड़क देखी जा सकती है अगल-बगल मे कुछ सजावटी के लिए फूल वैगेरे भी लगाए गए है।

रंग से पेंट किया गया है और उसमे बहुत सारी खिड्किया लगी हुई है सामने एक साइकिल रखी हुई है साइकिल का कलर काला दिख रहा है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है।